बहुत सारे जीम करने वाले मशीन भी है।

ऊपर लिखा हुआ है फीमेल जनरल वार्ड ।

अंदर में एक बेड नजर आ रहा है।

दो ताला सिक्कड़ में लटकाया हुआ है और एक ताला ग्रिल में लगाया हुआ है।

साइकिल छोटा और पुराना है।

सामने वाले साइकिल का रंग ब्लैक और रेड कलर का है।

ऊपर के डब्बे का कलर येलो और वाइट है।

सामने में एक लड़का बैठा है जिसके टी शर्ट का कलर ब्लू और व्हाइट है और उसके जींस का कलर ब्लू है।

यह दृश्य एक फॉरेस्ट का है।

कि व्हाइट रेड एंड ब्लैक कलर का है।

यहां पे बहुत सारे बाइक और स्कूटी लगाए हुए हैं।

पीछे में एक कार लगी है जिसका कलर व्हाइट --

सामने में एक शीशे का दरवाजा है।

बगल में एक पॉट रखा हुआ जो की ब्लैक और येलो कलर का है।

यह दृश्य से एक ड्रिल मशीन का है जिसका कलर रेड एंड ब्लैक है।

इसके बॉक्स का कलर भी रेड और ब्लैक है।

नीचे में लिखा हुआ है इंस इंस्ट्रक्शन मैनुअल ।

पानी में दो तीन रिंग टाइप में है जोकि ग्रीन यलो और रेड कलर का है।

यहां पे अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जोकि हरे भरे दिख रहे हैं।

इसपे व्हाइट कलर से लिखा हुआ है कजरिया।

सामने में एक घर नजर आ रहा है जिसके छत पर बहौत सारे आदमी खड़े होकर देख रहे है।

रफ हरा भरा दिख रहा है सामने की ओर एक टॉवर लगाया हुआ है जिसका कलर व्हाइट है।

इस दृश्य में बहुत टोकरी और बेना नजर आ--

यहां पे सामने के कपबोर्ड में बहुत सारे पाइप नजर आ रहे हैं।

ग्रीन कलर का पौधा नजर आ रहा है।